यहां पे लस्सी भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बल्ब के नीचे में ढेर सारी चीज रखी गई हैं।

तस्वीर में एक जगह पे लाइट जलते हुए नजर आ रहा है।

ये रूम ब्लू कलर के दिखाई दे रहे और नीचे में टाइल्स लगा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पे कुछ लाइट जलती हुइ भी नजर आ रही है धुप की रौशनी --

यहां पे ढेर सारी चीजें बनाई गई हैं।

पीछे वाइट कलर के दिखाई दे रही है।

सामने में एक येलो कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

के बगल में ढेर सारी कुर्सी लगाई गई हैं ब्लैक कलर के।

इस तस्वीर में ग्राउंड का दृश्य दिखाई दे था है जहां पे ढेर सारे लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं।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

उसके बगल में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे छोटे छोटे घास दिखाई दे रहे हैं।

ईटे में पलस्तर किया हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे कार में दो बैलून भी लगाए गए हैं और पूजा भी कर दिया गया है।

इस तस्वीर में तो बोट दिखाई दे रहे हैं।

सामने में धुआं थोड़ा थोड़ा उड़ते हुए नजर आ रहा है।

यहां पे ढेर सारी कर्मचारी लोग दिखाई दे रहे है और कुछ पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे है।